और उसके आस पास एक सड़क है जिस पर एक गाड़ी चल रही है।

इस चित्र में एक बेड है और इसके पास एक टेबल है और इसमें एक सोफा है--

बैंक के बोर्ड का कलर लाल है।

यह चित्र किसी घर या कैफे का है इसमें एक लाइट लगी हुई है।

लगे हुए हैं और पौधों के ऊपर फूल भी लगे हुए हैं मंदिर के अंदर पर्दे भी लगे हुए हैं।

घर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है और ऊपर एक टंकी रखी हुई है।

और उसके पास एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह चित्र किसी सड़क का है जिसमें एक गाडी जा रही है और एक ऑटो भी जा रही है।